सामने बहोत सारे लोग खड़े हुए है एक औरत इधर देख रही है जो मास्क लगाए है और सामने कांच लगा हुआ है और एक पोस्टर लगे हुए है बगल में एक पेड़ लगा हुआ है जो हरे रंग के पत्तिया है और जाली लगा हुआ जो हरे रंग की हैं।

सफेद रंग के लाइट लगाई गई हैं और एक लड़का जो फ़ोटो खीच रहा है और सामने एक साइड में एक लड़की खड़ी हुई हैं।

जो हरे रंग की है और पीछे के साइड में बहोत सारे पेड़ है और बहोत सारे बास गड़े हुए हैं।

कांच के सामने एक लड़का जिम में सेल्फी ले रहा है जिसके फ़ोन में सामने एक बैग का फोटो बना हुआ है।

सामने एक लड़का बॉडी दिखा रहा है जो लाल कलर का टी शल्ट पहने हुए --

ऊपर के साइड पे एक पंखा है जो काले कलर की है और एक पीछे लाइट लगाई गयी है जो सफेद रंग की है बहुत सारे जिम करने वाले रखे गए है और एक सामने बड़ा सा कांच लगाया गया हैं।

बड़ा सा बुक स्टोर है जो बहुत सारी बुक रखी गई है एक कुर्सी पे लड़का बैठा हुआ है जो ब्लैक कलर का जैकेट पहने हुए --

और एक सामने से ऑटो जा रही है जो काले कलर की है पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है ऑटो के --